इस एक बिल्डिंग सामने की ओर नजर आ रही है जिसमें वाइट कलर का पेंट हुआ है।

इसके उपर वाल व्हाइट कलर ऑरेंज कलर का पेंट हुआ है।

सामने की ओर एक बड़ा सा मकान नजर आ रहा है जिसके ऊपर पलस्तर नहीं हुआ है।

साइड में एक छोटा सा गेट लगा हुआ है लोहे का और एक यह बड़ा सा भी गेट लगा है लोहे का।

नीचे वाल बहुत सारी कार व्हाइट कलर की नजर आ रही है।

बाहर की ओर कोल्ड ड्रिंक भी बहोत सारी लगी हुई हैं।

इसके अंदर एक पुल नजर आ रहा है सामने की ओर।

ऑरेंज कलर की दीवार भी है इसके अंदर जिसमें पेंट हुआ है ऑरेंज ।

इसके अंदर एक बड़ा सा शोरूम नजर आ रहा है।

जिसके अंदर ऊपर का कलर है व्हाइट और नीला।